साइट पीले पीले कलर का पत्थर में कुछ लगा भी हुआ है दूसरे साइड दो फ्लोर की बिल्डिंग दिख रही है।

में पेड़-पौधे लगे हुए हैं ऊपर हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं कुछ पत्थर जमीन में है कुछ पत्थर एकदम बड़े दिख रहे हैं।

यह एक बुक इस्टोर है इस बुक इस्टोर में एक व्यक्ति नीले कलर का सर्ट पहनकर कुछ दिख रहा है व्यक्ति के सामने एक पीले कलर की बुक रखी हुई है।

यह एक होटल का चित्र है होटल में सामने डिस्प्ले में मिठाइयां सजी हुई हैं एक जगह डिस्प्ले में बूंदी का लड्डू दिख रहा है।

ऊपर साइड जालीदार खिड़कियाँ लगी हुई हैं जो गिरने से बचाने के लिए नीचे फर्स में --

एक व्यक्ति हाथ डालकर जेब में खड़ा हुआ है पर्स लगाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बात कर रहा है।

यह एक मल्टीपर्पस दुकान दिख रही है यहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा सामान खरीदा जा रहा है एक व्यक्ति किसी चीज को निहार के देख रहा है दूसरा व्यक्ति जमीन में बैठा हुआ है।

फर्श में टाइल्स लगी हुई है समान में दुकान के किनारे बास्केट रखा--

जीन्स पहनी हुई हैं एक लड़कियां ब्लैक कलर का जीन्स पहनी हुई है एक लड़की रेड कलर का कपड़ा पहनी हुई है नीचे फर्श ब्लैक कलर की है।

उसी सफेद कपड़े के ऊपर एक केले का पौधा दिख रहा है मोर के आगे हरे भरे पेड़ दि--

एक व्यक्ति पीली कलर की जैकेट पहना हुआ है एक व्यक्ति नीली कलर की जैकेट पहने हुए हैं कंप्यूटर के पीछे पर्दा लगा हुआ है --

यहां पर दवाई से रिलेटेड सारी परेशानियां मिटाई जाती हैं कोई व्यक्ति को कुछ भी हुआ हो दवाइयां मिलती हैं।

बिल्डिंग के किनारे ईंटों का कलर दिख रहा है बिल्डिंग के बाहर एक व्यक्ति बाइक में जा रहा है बाइक में येलो कलर का झोला रखा हुआ है बाइक लाल कलर की है।

यह फोटो एक कांफ्रेंस हॉल का दिख रहा है ऊपर ब्राउन कलर का सीलिंग फैन लगा हुआ है सीलिंग फैन के बगल में एक लाल कलर की तार लटकी हुई है।

सीलिंग फैन भी बहोत सुंदर दिख रहा है हॉल के ऊपर का डिजाईन सफेद है लाईटे लगी हुई हैं निचे कई प्रकार सोफा रखा हुआ है रंग बिरंगे--

यह एक दुकान का चित्र दिख रहा है दुकान में मेज़ पर कुछ समान रखा हुआ हैं कंप्यूटर भी रखा हुआ है मेज़ में दुकान के पास --

और आसमान में नीचे साइड बहुत हवा प्रदूषण दिख रहा है।

यह एक आटो स्टैंड है यहाँ पर बहुत सारी आटो खड़ी हुई हैं एक कार भी खड़ी हुई है।

एक लड़की भी खड़ी हुई है नीचे फर्श पीले पीले कलर का दिख रहा है ऊपर आ आसमान सफेद कलर का दिख रहा--

वहीं पर किनारे साइड गोल-गोल लंबे-लंबे पिल्लर की बाउंड्री बॉल है वहीं साइड किनारे खजूर का पेड़ दिख रहा है फर्स पर टाइल्स दिख रही है।

लाल कलर से कुछ लिखा भी हुआ है और एलुमिनियम सेक्शन का काम है ऊपर टीन का सेड लगा हुआ है।

वाइट कलर की फोर व्हीलर भी दिख रही है ऊपर सफेद आसमान भी दिख रहा है।

जूता पहन के खड़ा हुआ है ऊपर सफेद आसमान है नीचे बहुत सामान भी बिखरा हुआ है कागज पेपर आ --

यह चित्र एक किचन का है किचन के चारों ओर टाइल्स लगाया गया है टाइल्स में कॉफी कप का चित्र भी बना हुआ है।

फर्स में ग्रेनाइट का काम किया गया है किचन में एक विंडो भी लगाई गई है विंडो से सूरज की रोशनी आर-पार हो रही है।